ये एक एच_डी_एफ_सी बैंक है जहाँ पर महिला और पुरुष गेट के बाहर खड़े है और पार्किंग एरिया में बहुत सारे ये दो चक्र वाहन है।

और ऊपर चार और ऐ_सी-- औटवुड आउटरोड है और इधर एक खं--

और बाहर एक आदमी खड़ा है और उसके बाद जो कल लाल कलर के चेहरा दल के हैं और इस सालों को फूलों से सजा हुआ है एक सिटी--

दो क्यूबा सेल्फी खींच रहे है।

एक आम एक आदमी जो बॉडी बिल्डर हैं वो कसरत कर रहा हैं उसके वाजु बॉक्सिंग बैग हैं और वो एक लोवे से लटक रहा हैं।

यहाँ एक किराना दूकान दिख रहा है जहॉ पे आदमी फोटो के लिए खड़ा हुआ है।

यह और एक फ़िसलबंडा भी दिख रहा हैं और इनला पानी में खेल रहे हैं।

यह पुस्तकालय का दुकान है और सामने में सीढ़ी लगाई हुई है।

एक लड़का व्हाइट लड़का टी-शर्ट --

यहाँ पर स्टेशनरी बुक बुक्स बहुत भंडार है।

और यहाँ एक आदमी जो सेल्फी जो फ़ोन ले कर खड़ा हुआ है और चेयर पे स्त्री और पुरुष बैठे हुए है ऊपर स्टार एक स्टार है।

एक लड़का बैठ करके उसका पिनअप लग रहा ह और पीछे दो लड़के हाथ में फोन है जो फोटो खीच रहा है।

एक महिला के हाथ में बाग कवर टाइप है और बोट को तिरंगे लगाए हुए है और खुला आसमान है।